एक आदमी भी जा रहे है और बहुत खुबसूरत लग रहे है वाह बहुत सुन्दर लग रहा--

और मसाला वुसाला बन रहा है घर बनने के लिए और ये बोड़ा में भी है सीमेंट उमेट बाल्टी-वल्टी है।